जिसमे बारीक़-बारीक़ छोटी-छोटी मूर्तिया बनी है ऊपर की ओर--

एक मशीन के जरिये उस आदमी की पीठ पर कुछ कर रहा है।

और उसने सफ़ेद रंग का टी शर्ट पहना है जिसमे काली धारियां बनी है काले रंग का पेंट पहना है।

कुछ गिट्टी और सीमेंट के जैसा सामने की और दिख रहा है बहुत सारे मजादुर इसमें काम कर रहे है एक मजदूर सामने की और --

उसके बाल थोड़ा अजीब टाइप के कटे है सामने से उसके बालो में धरिया बनी हैं।

इसमें कुतुबमीनार जैसी लम्बी सी रॉड जैसा बना हुआ है।

में एक टीन शेड के निचे में दो कारे खड़ी है एक जीप जैसे है और एक कार जैसे है।

बगल में सफ़ेद रंग का मकान बना है जिसमे चार बड़ी खिड़कियां दिख रही है ऊपर टिन शेड लगा है।

और सामने में लोहै के एंगल के रॉड जैसा बाउंड्री वॉल है।

सामने एक लम्बी सी पोलोथिन भीछी है बगल में खम्बा दिख रहा है और पीछे की जमीन लाल दिख रही है एक टायर भी पड़ा है।

उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए है पीछे हरे रंग के--

एक गुफा जैसा भी बीच में बना हुआ है।